वहाँ पे एक बहुत ही विशाल बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और इसके सामने कई भीड़ भी लगे हुए हैं ।

और इस पूजा में बोहोत भीड़ भी लगी हुई है और --

इस तस्स यहाँ तस्वीर एक --

तार से इस टोटो में कुछ खराबी को सही कर रहे है।

और यहाँ के जो रंगे हुए थे और वह रंग फिलहाल तो छूट गए है।

लेकिन फिर भी यह मंदिर बहुत ही में दिख रहा है ।